यह एक सुभोध फास्ट फूड हैं जो बर्गर बनाता हैं यहां पर कुछ लोग यहाँ पर बर्गर खाने के लिए आए हुए हैं पीछे बर्गर रखा हुआ हैं।

यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा है अट दे रेट अइमेर्स आई_आई_टी जी सेकंड मेडिकल | यहा पे एक चेयर लगा हुआ है| एक चैयर पे एक व्यक्ति का कंधा दिख रहा है| यहाँ पर एक--